मेरे अनुसार यहां पर एक बड़ा सा दरवाजा है और पीछे बहोत बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगी है।

यहां पर सभी पुशअप भी लगते हैं और बड़े बड़े डंबल रखे हुए हैं।

मेरे अनुसार यहां पे एक बड़ा सा कंपनी है।

यहां साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

हरे हरे घास भी दिख रही है।

और पीछे बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी है यहां पर बहोत सारे लोग स्नान कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक समान है और कुछ पुराना समान रखा हुआ है।

मेरे अनुसार यहाँ पर सामने--